ये एक वन फाइव वन बेस हॉस्पिटल है।

जो की यूनिट रन कैंटीन भी बनी हुई है।

और काले कलर के बड़े-बड़े पर्दे --

पार्क में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

घर के बाहर दरवाजे और खिड़कियाँ--

पास में दो दरवाजे और कुछ रूम बने हुए हैं।

जो कि स्पेशल लाइब्रेरी के नाम से बनी है।

ऊपर मशीन पर एक फैन लगा हुआ है।

यह एक शीते उस्ताद का ढाबा है जो कि रंगला पंजाब के नाम से बना हुआ है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा रूम बना हुआ है।

डिज़ाइन में शेट डला हुआ है।

जो कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।

और पास में एक बच्चा भी खड़ा हुआ है।

ये एक बड़ा सा हॉल है।

जहाँ पर कुछ ज्वैलरियाँ रखी हुई हैं।

बाहर एक टिकट्स का कॉर्नर बना हुआ है और एक इनॉक्स नाम से काउंटर बना हुआ है।

जहां पर हिंदुस्तान राज एक्सप्रेस ।

और वो पैंट कर रही है।

इस पिक्चर में एक तंदूर नाम से होटल बनी हुई है।